नमस्कार ! installation of libreoffice suite पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि लिबरे ऑफिस suite को linux os पर कैसे संस्थापित करते हैं
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ:
linux os में इस tutorial का अनुसरण करने के लिए किसी को भी निम्न से परिचित होना चाहिए:
यदि नहीं तो कृपया website पर लिनक्स series में सम्बंधित tutorials को देखें
अब libreoffice suite के संस्थापन के साथ शुरू करते हैं
libreoffice suite synaptic package manager प्रयोग करके downloaded और संस्थापित किया जा सकता है
अधिक जानकारी के लिए लिनक्स spoken tutorial series में सम्बंधित tutorial को देखें
आगे अब सीखते हैं कि terminal प्रयोग करके libreoffice suite को कैसे संस्थापित करते हैं
पहले मैं firefox web browser खोलूँगी
address bar में type करें www libreoffice org/download और enter दबाएं
तुरंत ही हम download page पर निर्देशित किये जायेंगे
यहाँ आप libreoffice suite को download करने के लिए download button देख सकते हैं
default रूप से हमारे default os के लिए लिबरे ऑफिस का नवीनतम version यहाँ दिखता है
मेरी स्थिति में मैं linux os पर recording कर रही हूँ अतः यह लिनक्स के लिए लिबरे ऑफिस का नवीनतम version दिखाता है
लेकिन हम अपने os version के लिए उपयुक्त इस सॉफ्टवेयर को download कर सकते हैं
how os या लिबरे ऑफिस version को कैसे बदलते हैं os download button के बिल्कुल ऊपर वाले link change पर click करें
हम एक अन्य पेज पर निर्देशित किये जायेंगे यहाँ हम अनेक os s के लिए download विकल्प देख सकते हैं हम उनमें से एक अपनी ज़रुरत के अनुसार चुन सकते हैं
यहाँ हम जो संस्थापित करना चाहते हैं libreoffice suite का वो version भी चुन सकते हैं
मैं linux x64 bracket में deb चुनूँगी क्योंकि मेरे पास 64bit ubuntu लिनक्स machine है
ऐसा करने पर हम एक बार फिर download पेज पर निर्देशित किये जायेंगे
ध्यान दें कि libreoffice और os के default version अब हमारे चुनाव के अनुसार हैं
अब download button पर click करते हैं
as करने पर save as dialog box खुलता है
ok button पर click करें और download शुरू होगा internet की speed के आधार पर यह कुछ समय ले सकता है
जब download पूर्ण हो जाता है तो terminal खोलें हम ऐसा keyboard पर एकसाथ ctrl alt t कीज़ दबाकर कर सकते हैं
terminal पर type करें: cd space downloads और enter दबाएं
फिर type करें: ls और enter दबाएं
हम downloaded की हुई libreoffice suite file tar gz format में देख सकते हैं
अब मैं ctrl + l कीज़ दबाकर screen को clear करुँगी
फिर type करें: tar spacezxvf space और उस file का name और enter दबाएं
फिर type करें: cd space file का name और enter दबाएं
अब type करें: cd caps में debs और enter दबाएं
at में type करें: sudo space dpkgi space * deb और enter दबाएं
अपने system का password type करें और enter दबाएं
enter दबाने के बाद libreoffice suite का संस्थापन शुरू होगा
संस्थापन कुछ समय लेगा एक बार संस्थापन पूरा होने के बाद terminal बंद करें
dash home पर जाएँ और search bar क्षेत्र में type करें office
आप अनेक लिबरे ऑफिस suite components देख सकते हैं जैसे base calc impress writer draw और math
यह दिखाता है कि libreoffice suite आपके linux system पर सफलतापूर्वक संस्थापित हो गया है
इस tutorial के लिए इतना ही इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा ubuntu लिनक्स os में libreoffice suite कैसे संस्थापित करते हैं
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online tests पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें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
iit iit the बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ इस tutorial को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद